मोबाइल के दुकान के सामने एक बड़ा सा लाइट जल रहा है।

मैं देख पा रही हूं यहां एक बड़ा सा योगा क्लास है। जहां बहुत सारी--

मैं देख पा रही हूं यहां एक वन विभाग है जहां एक बड़ा सा--

चार औरतें डांस करती हुई--

सीढ़ी भी नजर आ रही है।

बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

मैं देख पा री हूं यह जिम गर है।

लाइन के खम्मे है और साइकल भी है।